ये कोई रेस्टोरेंट या बार है ब्लैक ओरेंज कलर का फुग्गा लगा है। उम्म और रेड एंड येल्लो बल्ब है।

पोल है जिसके बगल में एक सिल्वर कलर का पोल है।